नया साल के डायरी भी मिलता है और कैलेंडर भी स्टेशनरी एवं --

इसमें फसल लगाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

इसमें बच्चे खेलने का सामान है जो बहोत अच्छे खूबसूरत दिख रहा है और इसका पेंटिंग भी बहोत अच्छा है और फिसलने वाले है बच्चे के लिए बहोत ही मज़ेदार --

महल यह एक बहुत पुराना महल है जिसमें राजाओं के दौरान हुआ करता था।

यहाँ पे शादी होने वाला पंडाल बनाया गया है जो पंडाल बहोत खूबसूरत लग रहा है शादी के लिए ये पंडाल बनाया गया है।

और हाथ में एक बोतल भी है और ब्लैक कलर का शर्ट पहने है।